जैसा कि आप देख सकते है कि यह चर पाच लोग खड़े हुए दिख रहे है तथा एक व्यक्ति यहाँ सड़क पे झाड़ू --

जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लड़का है जो कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कसरत घर है जिसमें --

यहाँ घर भी दिखाई दे रहा है तथा यहाँ फूल के पेड़ भी लगे हैं और इसमें फूल खिला हुआ है और हरे-हरे पेड़ भी दिख रहे हैं।